शॉप के बाहर एक वाहन भी दिखाई दे रहा है।

कमरें के बाहर काफी सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।

होल में लोहे की वस्तुएं भी रखी दिख रही हे ।

कंपनी का नाम अभी स्टेट इंफ्रा लिखा है।

जमीन पर एक बड़ा सा बर्तन भी दिख रहा है।

मुझे यहां एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

होली में एक बड़ी सी एल_सी_डी भी दिख रही है।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

आस पास में कई सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां पर एक बड़ा सा पेटोल पंप दिखाई दे रहा है।

घर में काफ़ी सारा सामान भी दिख रहा है।

मुझे यहां पर बड़ी सी जाली दिखाई दे रही है।